और सड़क पर बहोत साइड मे भी पोस्टर लगे हुए है। पेड़ पौधे खड़े हुए है। बहुत अच्छा लग रहा --

इसकी टेहनी बहोत अच्छी लगी हुई है और यहाँ पर खंबे भी गडे हुए हैं और ये माता जी के लिए प्रणाम कर रहे है। अपना माथा टेक रहे है।

ये जहां पर दो भैंसिया जा रही हैं।

ये यहाँ पर पहाड़ हैऔर जंगल है। यहाँ पर और पेड़ पे फूल आयें हुए हैं। साइड में आम का पेड़ है या किसका होगा पता नहीं और ये हरे भरे पौधे हैं बहुत अच्छे लग रहें हैं।